इसका बोर्ड पिंक और व्हाइट और येलो ब्लू कलर का है।

कई तरीके के गुड्डे मिलते हैं और यहां पर एक मीटर लगा हुआ--

यहां झरने की तरह पानी एक गड्ढे में नीचे गिर रहा है।

जमीन में एक पैप पड़ा है जो कि ग्रीन कलर का है।

जिनपर बहुत सारी अलग अलग तरीकों की पेंटिंग लगी हुई हैं।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

वॉल में पर्दा लगी हुई है जोकि पिक और वाइट कलर की है।

यहां पर चार पिलर दे खड़े हुए हैं उनका कलर सिल्वर है।

एक ट्राली खड़ी हुई है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सामान रख रखा है।

यहां पर चार गोले से बने हुए हैं जिनका कलर हरा है।

यह एक जगह है जहां जमीन में सफेद और लाल कलर की चादर बिछी हुई है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और दीवालो का कलर सफेद है।

साइड में एक और केरट रखी हुई है वो भी पीले कलर की है उसमें बहोत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

और दीवाल में एक अलमारी है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

यहां पर एक पुलिस खड़ा हुआ है जिसने पीली कलर की कपड़े पहन रखे हैं।

यहां पर लाइट लगी है जो कि सफेद कलर की है।

यहां पर बहोत सारे तरीकों का पेंट रखा हुआ है ऑरेंज कलर पिंक कलर येलो कलर और वाइट कलर ।